एक शॉप में बहुत से टायर --

और उस कार के अंदर कोई भी नहीं है।

नीचे तक गड्डा खोद रहे है और कुछ लोग--

काला कलर का पिंजरा बनाया हुआ है।

एक तालाब के ऊपर कुछ--

और कुछ कुर्सियों भी रखी हुई है।

बहुत से लोग एक पेड़ के सामने--

चित्र मे यह नजर आ रहा है कि ए--

एक चित्र है इसमें यह बताया गया है।

इसमे यह दिखाई दे रहा है कि एक खाली सा रेस्टोरेंट है।